इस तस्वीर मे ज्यादा कुछ नहीं आया है कुछ चीज़े आईं हुई है और एक एक लड़का भी है और ये फिटनेस का जो है ये सेन्टर है।

यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है उसके आस-पास कुछ लड़के भी खड़े हुये है और नीचे जो है मछलिया रखी हुई है उसके लिए कुछ कर रहे है यहां पे बेच रहे है शायद !

इस तस्वीर मैं एक लड़का बेठा हुआ है। पीछे कई सारी पुस्तक है और हाथ मैं मोबाइल लिए बेठा है। पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का--

यहाँ पर कुछ महिलाये नृत्य कर रही है और बहोत सारी महिलाये भी मौजूद है।